में काफी पेंट के बॉक्सेस एंड --

ये लड़कियां टोटल थ्री हैं।

को योगा सीखा रही है।

इसके प्रोपेटर का नाम गुरजंट सिंह है।

ये क्रेन की तस्वीर है।

बना हुआ है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है।

कलर ब्लैक एंड व्हाइट --

पार्क में बैठी हैं इस--

इन तीनों का कलर अलग अलग--

पिंक पर झूले ले रहा है।